इस पिक्चर में हमको तीन कछुए दिखाए जा रहे जोकि बहोत बड़े कछुए है।

ये कछुआ बहुत ही सुंदर लग रहा है और इसका बहो पैर बहुत बड़ा है।